फटाखा भी हे डब्बा यह फ्रिज कस लगथ हे और एक कार्टून हे रे एकठो मस्त रूम हे इमे लाइट जलत हे दस-दस के आसपास --

टूर्नामेंट हो सकत थे कबड्डी हो सकत थे खो-खो हो हो सकत थे अउ बहुत कुछ हो सकत थे।

रेलवे स्टेशन ये ये ह रेलवे रेल गाड़ी ये एखर अंदर म बहुत सारा आदमी मन बइठे हे ए ए --

ए- ह- एक ठो बहुत बड़े बांध हे एकर आस पास में बहुत लाखों करोड़ों में पेड़ पौधा लागे हे।

ये ह सीढ़ियाँ हरे जेमा आदमी मन अस्नांदे थे ध्यान थे कपड़ा भी धोथे एमा बहुत आदमी मन नहाए - धोए ल आथे कपड़ा धोथे बाइक वाइक सब धो सकत हे--

ऊपर अलग से जाथे ट्रेन और ये लोहा के लगे हे साइड- साइड में--

कार डीजल भरवाए पैट्रोल भरवाए आथे--

एहा फल दुकान ए जिहा सेव संतरा अँगूर मैंगो मतलब आमा अउ एहा कच्चा सेव पक्का सेव--

बहुत कुछ मिल सकत हे बहुत झन मन आथे लेहे ला--

ए हा एक ठो बहुत बड़े ऑफिस है जिहा ल ऑनलाइन कुछ भी काम कर सकत हे मतलब कुछ भी ऑनलाइन ट्रांसेक्शन आंजेसन करा सकत हा आपमन अउ ये पंखा वंखा सब सुविधा हे लाइट वाइट सब--